ये आजाद पुस्तक भवन है जो गया मे आजाद पार्क के पास है यहाँ पर हर तरह के किताब मिलता है।

और स्टेशनरी के भी सामान यहाँ पर मिलते है यहाँ पे टेंथ तक की किताबे मिलती है।

ये चर्च ऑफ डिवाइन मर्सी है जो जहानाबाद में है। यहां पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसीलिए बहोत सारे लोग यहां पर आए हैं।

ग्राउंड मे पानी भरा हुआ हैऔर पास में बहुत सारे बालू रखे हुए हैं।

ये एक राशन की दूकान है किराना जनरल स्टोर है जहाँ पर डेली यूजेस के बहुत सारे सामान मिलते हैं ।

जो एक प्रोटीन शेक का काम करते हैं। नीचे बहोत सारे ये अवार्ड रखे हुए हैं। यहां पे फोनपे की भी सुविधा दी गई है।

ये जी_एन_एम प्रशिक्षण संस्थान है प्रशासनिक भवन है जहानाबाद का ।

और इस दवाइयो से लोग जल्दी ठीक भी हो जाते है सामने रूप मंत्रा डाइजेशन की दवाई की शिशी रखी हुई है।